और एक आदमी चाय बना रहा है।

जिसका रंग ग्रे कलर है और इसके अगल बगल कांच से घेरा हुआ है।

इस चित्र में अरविंद इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स है संदीप मंजिल चौक डाल्टन गंज ।

और मोटर का है।

और इसके अंदर एक लाइट लगा हुआ है जो उजला कलर का है और इसमें दो लड़के खड़े हैं।

और बाहर में एक मीटर लगा हुआ है और अंदर बहुत सारे कपड़े हैं और जैकेट भी है और बाहर एक पुतला खड़ा हुआ है।

इस चित्र में दीवाल है।

बहुत सारे पिकअप पर टायर रखे हुए हैं।

इस चित्र में बहुत सारे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं।

बहुत सारे ट्रे हैं।

बहुत सारे डिब्बे मे टिफिन है।

ऊपर शीशा का रेक है।

और एक आदमी चौखट को लग रहा है और उसके बगल में एक बना हुआ घर है।

और इसके बहुत दूर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

और इसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यहां पे नीचे हरे कलर का मैट बिछाया हुआ है।

यहां पे सभी बच्चे क्रिसमस डे मना रहे है।

यहाँ पे दो टंकी रखे हुए हैं जो एक स्टील का है और एक फाइबर का है।

बहुत सारे कपड़े और जूते हैं।

आदमी मोबाइल लेकर हाथ में जा रहा है।